यहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए है यहाँ पे बहोत सारी बुक्स और फाइल्स भी रखी हुई है यहाँ पे बहोत सारी पानी कि बॉटल्स भी रखी हुई है।

तो कुछ ईंटों का कलर पिंक और कुछ का कलर ऑरेंज दिखाई दे रहे यहाँ पे एक सीढ़ी भी रखी हुई यहाँ पे कुछ बांस के डंडे भी रखे हुए है यहाँ पे बहुत सारी ईंटें भी पड़ी हुई है।

वहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हुए है एक व्यक्ति के पास एक औजार है जिससे कि वो एक नली काट रहा है यहाँ पर बहुत सारे मशीन है।

फैंस लगे हुए हैं और यहां पे बहुत सारे चेयर्स रखी हुई हैं और कुछ मशीने ।

--और यहा पे कुछ डंबल्स भी दिखाई दे रहे है यहा के गेट पर ब्राउन सा दिखाई और ब्लैक दिखाई और नीचे ब्लू कलर का कार्पेट है और दीवार पिंक-पिंक सी दिखाई दे रही है।